राइट साइड में हमें दो-तीन बसे नजर आ रही हैं जो की वाइट कलर की देख रही है और उनमें शीशा लगा हुआ है।

जो कि व्हाइट और थोड़ा सा लाइट ब्लैक दिख रहा है।

जो की अपने हाथ में कुछ ए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट लिए हुए हैं।

इस पिक्चर में हमें एक रोड को देखते हैं जो कि ज्यादा साफ नहीं दिखाई देती है और मिट्टी ही मिट्टी की बनी हुई है।

इस शोरूम में हमें सबसे ऊपरी भाग में कुछ लाइटें नजर आती है और यह जो शोरूम है वो व्हाइट कलर के पेंट से कलर किया गया है।

इस पिक्चर में हम देखते है कि बहुत से पेड़-पौधे लगे हुए हैं और लोगों की बहुत भीड़ है जिनमे लड़के और लड़कियां कुछ दादाजी अंकल बच्चे सभी शामिल है।

और फिर हम एक टेबल को देखते हैं जिस पर कुछ सामान रखा हुआ है।

यह जो शॉप है यहां पे अंदर मे फ्रेम के अंदर मे कुछ सामान दिख रहा है।